पिक्चर में बस नजर आ रही है।

गमले नजर आ रहे हैं बड़ा सा पिलर नजर आ रहा है।

विग्नान बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

बोतलों रखी हैं डब्बे रखे नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रही हैं।

पिक्चर में कार नज़र आ रही है।

झंडा नजर आ रहा है बोर्ड लगा नजर आ रहा हैं मंदिर दिख रहा हैं।

कैलकुलेटर नजर आ रहा है बहोत सारी लाइटें लगी हुई नजर आ रही हैं।

गैस सिलेंडर रखा नजर आ रहा है।